जाली के उस पार बड़ा -सा पेड़ दिखाई दे रहा हैं।

ये एक हॉस्पिटल का रूम दिखाई दे रहा हैं इस हॉस्पिटल के रूम के ऊपर फीमेल --

ये एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही हैं नदी के पास में पूल बना हुआ पूल पे रेलिंग लगी हुई हैं।

गेट गेट को पेंट किया गया हैं मकान ईट और सीमेंट का बना प्लास्टर का मकान दिखाई दे रहा हैं।

तीन व्यक्ति बकरीया चरा रहै हैं सामने पहाड़ी दिखाई दे रही हैं बड़ी सी--

एक विंडो खाली खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं एक बड़ा सा हॉल हैं उसके हॉल का बीच में पिलर दिखाई दे रहा हैं।

ब्लू जीन्स और पिंक टी-शर्ट पहने चस्मा लगाए हुए।

पोज़ देते हुए एक फोटो सेल्फी पोज़ देते हुए दिखाई दे रहा हैं।

इसमें स्वच्छ स्वक्षण दो हज़ार बाइस लिखा हुआ हैं।

इसके ऊपर चार स्टैचू दिखाई दे रहै हैं।

ये एक ग्राउंड में स्टेज दिख रहा हैं सामने में बना हुआ सुन्दर सा--

ये सब्जी मंडी हे सब्जी मंडी दिख रही हैं इसमें--

इसमें सामने पिचर लगी हुई हैं गदर।

पोस्टर में सनी देओल और अमीषा पटेल--

दिखाई दे रहे है कुछ लाइन्स है तीन रो में तीन लाइन में बच्चे खड़े हैं।

खाली सा मैदान हैं आगे और एक ये बस स्टॅंड पे बस खड़ी हुई दिख रही हैं।

ये गेरेज दिखाई दे रहा हैं कार का गेरेज --